चौड़ा सा सोलिंग वाला रोड है दोनों साइड में।

लाल कलर का पेंट किया हुआ है।

कपड़े का दुकान है इधर मूर्ति के ऊपर कपड़ा पेहनाया के दिखाया गया है डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सूट है सारा बहुत अच्छा लग रहा है कस्टमर को खरीदने में आसानी होगा और बहुत अच्छा लग रहा है।